लिबर ऑफिस कैल्क में इमेज प्रविष्ट करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे डॉक्युमेंट में एक इमेज चित्र फाइल प्रविष्ट करना
उदाहरणस्वरुप जेपीईजी पंग या बीएमपी
यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं
स्प्रैडशीट में इमेजेस को ऐसे जोड़ सकते हैं इमेज फाइल सीधे प्रविष्ट करके ग्राफिक्स प्रोग्राम से क्लिपबोर्ड की मदद से या गैलरी से
हम इन सबकी विस्तार में चर्चा करेंगे
अपनी personal finance trackerओडीएस स्प्रैडशीट फाइल खोलते हैं
सबसे पहले शीट 2 चुनें
हम इन शीट्स में इमेजेस को प्रविष्ट करेंगे
यह एक अच्छी आदत है कि पहले सेल चुनें और फिर इमेजेस को प्रविष्ट करें
यदि आपके कम्प्यूटर में इमेज पहले से ही संचित है आप इसे सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करके और फिर पिक्चर और फ्रॉम फाइल से चुनकर प्रविष्ट कर सकते हैं
अब उस इमेज को खोजें जिसे आप प्रविष्ट करना चाहते हैं
मैंने पहले से ही डेस्कटॉप पर इमेजेस नामक फोल्डर में कुछ इमेजेस का संचय किया है
अतः मैं इमेज1 चुनूँगा
हम लोकेशन फील्ड में इमेज का नाम देखेंगे
ओपन बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि इमेज स्प्रैडशीट पर प्रदर्शित होती है
इसे लिंक करके एक और इमेज जोड़ते हैं
पहले एक नया सेल चुनें
अब इंसर्ट और पिक्चर पर क्लिक करें और फ्रॉम फाइल चुनें
दूसरी इमेज चुनें
अब इमेज 2 पर क्लिक करें
इमेज को अपने डॉक्युमेंट पर लिंक करने के लिए लिंक ऑप्शन चेक करें और ओपन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है कीप लिंक बटन पर क्लिक करें
इमेज अब फाइल में लिंक हो गयी है
लिंकिंग जब हम एक फाइल को लिंक करते हैं सबसे पहले यह स्प्रैडशीट का आकार कम करता है जब यह सेव होती है
चूँकि हमारे स्प्रैडशीट में इमेज नहीं है
दूसरा यह उपयोगकर्ता को दोनों फाइल्स में अलग से परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है
इमेज फाइल में कोई भी किया गया बदलाव स्प्रैडशीट में लिंक्ड इमेज पर प्रदर्शित होगा
इमेज 2 का रंग बदलते हैं जोकि ग्रैस्केल के लिए फाइल से लिंक्ड है
मैं इस इमेज का सम्पादन करने के लिए इमेज सम्पादक गिम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ
आप अपनी मशीन पर संस्थापित कोई भी सम्पादक इस्तेमाल कर सकते हैं
सबसे पहले personal finance trackerओडीएस सेव करें और बंद करें
फिर इमेजेस फोल्डर में जाएँ
इमेज 2 चुनें
अब दायाँ क्लिक करें और ओपन विथ गिम्प चुनें
इमेज 2 गिम्प में खुलती है
अब इमेज को कलर से ग्रेस्केल में बदलें
अब इमेज को सेव करें और बंद करें
personal finance trackerओडीएस खोलें
इमेज 2 अब ग्रेस्केल में प्रदर्शित होती है
हालाँकि फाइल को लिंक करने का एक बहुत बड़ा नुक्सान है कि जब भी आप इस स्प्रैडशीट को दूसरे कम्प्यूटर या उपयोगकर्ता को भेजते हैं आपको दोनों भेजने पड़ेंगे स्प्रैडशीट और साथ साथ इमेज फाइल
जिसका मतलब है कि आपको हमेशा स्थान पता रखना होगा जहाँ आप दोनों फाइल्स संचित कर रहे हैं
इमेज को स्प्रैडशीट के दायीं तरफ खिसकाते हैं
स्प्रैडशीट में इमेज प्रविष्ट करने का एक और तरीका है फोल्डर से ड्रैग करके
जहाँ आपने इमेज संचित की है और उसे अपनी स्प्रैडशीट में ड्रॉप करें
इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करें
अब इमेज फाइल को अपने स्प्रैडशीट में सीधा ड्रैग और ड्रॉप करें जहाँ आप रखना चाहते हैं
आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्युमेंट में प्रविष्ट हो गयी है
CTRL और ज़ दबाकर इस बदलाव को अन्डू करें
अब इमेज को ड्रैग और ड्रॉप तरीके से लिंक करें
यह भी काफी सरल है
केवल कंट्रोल और Shift कीज़ को दबाकर पकड़े रहें
जब स्प्रैडशीट में इमेज ड्रैग कर रहे हों
इमेज फाइल अब डॉक्युमेंट से लिंक हो गयी है
इस कैल्क फाइल को CTRL और एस कीज़ को एक साथ दबाकर सेव करें
अब इस फाइल को बंद करें
अब फोल्डर पर जाएँ जहाँ इमेज स्थित है
इमेज 3जेपीजी इमेज को image4जेपीजी नाम दें जिसे हमने फाइल में प्रविष्ट किया है
अब पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल फिर से खोलें
आप देखते हैं कि लिंक्ड इमेज अब प्रदर्शित नहीं है
लिंक्ड पाथ एक एरर दिखाता है
इस लिंक को डिलीट करें
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
कैल्क शीट में लिंक के रूप में एक इमेज प्रविष्ट करें इसे सेव और बंद करें
अब फोल्डर में जाएँ जहाँ इमेज संचित है और इमेज को डिलीट करें
खोलें और देखें यदि इमेज अभी भी कैल्क फाइल में प्रदर्शित है
अब इमेज को वापस इमेज फोल्डर में पेस्ट करें
जाँचें यदि इमेज कैल्क फाइल में प्रदर्शित है
स्टैंडर्ड टूलबार के बिलकुल नीचे एक नये टूलबार पर ध्यान दें
यह पिक्चर टूलबार है
पिक्चर टूलबार के सबसे ऊपर बायीं तरफ फिल्टर बटन इमेज के रूप को बदलने के अनेक ऑप्शन्स प्रदान करता है
CTRL और ज़ दबाकर इसे अन्डू करें
ग्राफिक्स मोडे बटन में इमेज को ग्रैस्केल ब्लैक एंड व्हाइट या वॉटरमार्क में बदलने के ऑप्शन्स होते हैं
पिक्चर टूलबार में और अन्य ऑप्शन्स हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे
आगे हम सीखेंगे कि एक क्लिपबोर्ड से इमेज कैसे प्रविष्ट करें
क्लिपबोर्ड में संचित इमेजेस को आप एक लिबर ऑफिस स्प्रैडशीट से दूसरे में कॉपी कर सकते हैं
एक नई स्प्रैडशीट बनाएँ और उसे abcओडीएस नाम दें
यह हमारा टारगेट डॉक्युमेंट है
हमारे पास हमारी personal finance trackerओडीएस फाइल में पहले से ही एक इमेज है
यह हमारा सोर्स डॉक्युमेंट है
अब सोर्स फाइल से इमेज को चुनें जिसे कॉपी करना है
इमेज को कॉपी करने के लिए CTRL और सी कीज़ को एक साथ दबाएँ
इमेज अब क्लिपबोर्ड पर सेव हो गयी है
अब टारगेट डॉक्युमेंट पर जाएँ जोकि abcओडीएस है
स्थान चुनें जहाँ आप अपने सेव किये हुए इमेज को abcओडीएस में रखना चाहते हैं
अब डॉक्युमेंट में इमेज प्रविष्ट करने के लिए CTRL और व कीज़ एक साथ दबाएँ
हम देखते हैं कि इमेज हमारे टारगेट फाइल में प्रविष्ट हो गयी है
अब हम सीखेंगे कि कैल्क गैलरी से इमेजेस को सीधे कैसे प्रविष्ट करें
Galleryमें इमेज और साथ ही ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अपने स्प्रैडशीट में प्रविष्ट कर सकते हैं
देखते हैं यह कैसे करें
स्टैन्डर्ड टूलबार में गैलरी आइकन पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इसे खोलने के लिए गैलरी पर क्लिक करें
अब गैलरी जो इमेज प्रदान करता है उनमें जाएँ और उस इमेज पर क्लिक करें जिसे आप अपने डॉक्युमेंट में प्रविष्ट करना चाहते हैं
गैलरी से इमेज ड्रैग करें और स्प्रैडशीट मे जहाँ आप प्रविष्ट करना चाहते हैं वहाँ ड्रॉप करें
आप देखते हैं कि इमेज हमारे personal finance trackerओडीएस फाइल में प्रविष्ट हो गयी है
इसी के साथ हम लिबरऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत पर आ चुके हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे कई सरे अलग अलग तरीकों से एक इमेज फाइल को स्प्रैडशीट में प्रविष्ट करें
जैसे एक फाइल से क्लिपबोर्ड से या गैलरी से निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
उनको प्रमाणपत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद